रेल की पटरी है। ट्रेन जा रही है। नीले कलर की ट्रेन है।

से सजावट हैं। गुलाब कलर के फूल लगे हुए हैं।

एक तालाब है और स्टीमर चल रहा है। उसमें दो आदमी बैठे हैं। दो आदमी का रंग एक व्हाइट टी-शर्ट पहन --

के एक पीली पहन रखे है। रंग सफेद है बादल का। पेड़ पीछे लगे हुए है।

एक आदमी खड़ा है। व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखा है। उसमे बहोत सी माला पड़ी है। परचून की दुकान है। रेड कलर की --